ये एक जिराफ है जो की हरे रंग दिख रहा है अगल बगल पेड़ पौधे दिख रहे है जो की बड़े बड़े है एक लड़का लाल रंग का शर्ट पहना हुआ है काला रंग का पैंट पहना हुआ है गार्डन में बना हुआ है|

कही पे घास कही पे पेड़ दिख रहे है बड़े बड़े आसमानी रंग सफ़ेद है|

यहाँ पे शिवजी की मूर्ति बानी हुई है। वह नील रंग से बानी हुई है। सिर पर बल दिख रहे है नाटइ पे माला दिख रही है। सामने पे कुछ--